यह फलों का इसमें कैरियर है इसमें फल रखे जाते हैं भांति-भांति के फल हैं जो कि स्वास्थ के लिए काफी महत्वपूर्ण होते हैं।